खिड़की है अ बहुत सारा गेट और खिड़की है।

बहोत सारा साइकिल रखाऐ हुए हैं यहां भोजन मछली काटत ।

इहा गाड़ी दुकान हवय इहा कार भी बनाथे इहा --

बहुत योगा ओगा के मूर्ति बने हुए--

ये बहुत बड़े खेत इहा हरा-भरा दिखत हवे।

बंधन कलर के भगवान के पीछे में पर्दा लगे हुए--

यहां बहुत माटी माटी वाला पानी बहत है पहाड़ हवे --

सिम काटता है आंटीया और टोकोनी रखा है।

कई ठन टमाटर मन लाल हे कई टमाटर मन हरा हे।

पेड़ पौधा दिखाई देते और इधर खंभा तक ओहि--

और चारों और हरा भरा मैदान दिखत हौ।

कुछ ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा है अभी--

लाल कलर के काउंटर बने अभी ग्रे कलर के।

अउ अउ रंग-बिरंग के झुलना आ हवे।

यह एक डांस स्टेड हरे यहां एक लड़की ह डांस करत थावी ।